और वहां पर रबड़ भी मिलते हैं यहां एक कैंची--

अलग अलग तरह के फूल लगे हैं और यहां पर केले के पत्ते लगे--

बड़े पत्थर बिछे हुए है उसपर कुछ कछुए चल रहे है और वहां पर--

कोयल ग्रीन और या वाइट कलर का है।

व्हाइट कुत्तों के अंदर कुछ माल भरा जाता है जो की बहुत सारे लोग वह काम करते--

खिड़कियों की बाउंड्री गेटों की बाउंड्री पर मिलती है और यहां पर एक--

दे का पेंट कुछ रेड और ब्लू कलर का है और यहां पर--

यहां पर पेट का हर एक सामान मिलता है जैसे फूड और दवाइयां --

बच्चों के भी मिलते है यहां पर हर एक प्रकार का कपड़ा मिलता है और डिजाइनर भी--

पेंसिल कलर का भी पेंट किया हुआ है इनके गेटों का कलर भी ब--

घर का कमरे के अंदर एक लगी है और वहाँ पर एक आदमी नें अपनी लातो पर पट्टीयां बाँधी हुई हैं।